इस फोटो को देखने से पता चलता है कि यह सिटी कैफे की है।

जिसमें टंकियां पानी की चार पड़ी हैं।

ऐसी लग रही है कि चार स्कूल की लड़कियों ने एक बड़ी सारी --

टाटा मोटर्स की फोटो दिखाई गई है।

चित्र में दिखाई गई फोटो एक पार्टी की है।

एक तरह से इसे गांधी पार्क कहा जाता है।

यह मलाई सोया चांप की फोटो लग रही है।

इस चित्र में ए_सी_पी राजस्थान का घर दिखाया गया है।

इस फोटो में एक बड़ा सारा गार्डन दिखाया गया है।